यहाँ लाइट फिटिंग के लिए वाइट कलर की नालियां बिछाई गई है तथा एक बोतल रखी हुई है। बो --

मशीन रखी हुई है तथा बहुत सारे टुकड़े रखे हैं।

यह एक फल फ्रूट की शॉपस है हैं जहाँ बहुत सारे फल रखे हुए हैं।